लिबर ऑफिस calc में cells के साथ कार्य पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
spreadsheet में numbers text text के रूप में numbers दिनांक और समय कैसे enter करें
format cells dialog box को कैसे इस्तेमाल करें
cells के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएँ
rows columns तथा शीट्स में कैसे चीजों को चुनें
हम operating system के रूप में उबंटू 1004 तथा लिबर ऑफिस suite वर्ज़न 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
चलिए पहले सीखते हैं कि cells में data कैसे enter करें
हम अपनी personal finance tracker ods file को खोलते हैं
आप किसी भी विशिष्ट cell में text type कर सकते हैं cell पर क्लिक करें और keyboard कि मदद से text type करें
default रूप से text बायीं ओर अलाइन होता है formatting bar पर अलाइन्मन्ट टैब पर क्लिक करके अलाइन्मन्ट बदल सकते हैं
इसे अन्डू करते हैं
a1 spreadsheet में cell a1 पर click करें
आप देख सकते हैं कि चुना गया cell चिन्हांकित होता है
यहाँ हमने पहले की column headings टाइप की है
items heading के अंतर्गत names कुछ items के names type करते हैं जैसे कि salary house rent electricity bill phone bill laundry तथा miscellaneous
cell में numbers enter करने के लिए cell पर click करें और numbers type करें
negative number को enter करने के लिए या तो number के आगे माइनस चिन्ह type करें या उसे कोष्ठक में रखें
default रूप से numbers दायीं ओर अलाइन होते हैं और negative numbers के आगे माइनस चिन्ह होता है
बदलावों को अन्डू करते हैं
अब हमारी personal finance tracker ods spreadsheet में serial number heading जोकि sn द्वारा संबोधित है हम चाहते हैं कि प्रत्येक item का serial number एक के नीचे एक रहे
अतः cell a2 पर click करें और 123 नम्बर एक के नीचे एक enter करें
serial नम्बर को अपने आप से in के लिए cell a4 पर click करें cell के दाएं कोने में एक छोटा सा काला box दिखाई देता है cell a7 तक इसे drag करें और फिर mouse button छोड़ दें
आप देख सकते हैं कि cells a5 से a7 तक आगे के serial numbers आ जाते हैं
items के serial number enter करने के बाद हम अब cost heading के नीचे हर एक items का मूल्य या cost enter करते हैं
अब हम cell c3 पर click करते हैं और house rent के लिए rupees 6000 type करते हैं
अब क्या करें यदि number के आगे rupee का चिन्ह लिखना है
मानिए कि हम electricity bill के लिए rupees 800 enter करना चाहते हैं अतः cell c4 पर right click करें और format cells option पर click करें
यह format cells dialog box खोलेगा
पहला टैब numbers है यदि पहले से ही इसे चुना है तो इस पर click करें
category के अंतर्गत हम विभिन्न वर्ग date सकते हैं जैसे कि number percent currency date time इत्यादि
currency को चुनते हैं
अब format option के अंतर्गत down arrow पर click करें यह विश्व के विभिन्न मुद्रा चिन्ह प्रदर्शित करेगा
ऊपर scroll करते हैं और inr rupees english india चुनें default rupees से नीचे ड्रॉपडाउन में rupee 1234 चुना गया है
आप दायीं तरफ छोटे से प्रीव्यू area में इसका प्रीव्यू देख सकते हैं
options के अंतर्गत हमारे पास decimal places decimal places को और leading zeroes को जोड़ने के लिए विकल्प है
ध्यान दें कि जैसे ही हम शून्य की संख्या बढ़ाते हैं format में किया गया चयन बदल कर rupees 1234 decimal zero zero हो जाता है और जो दो दशमलव स्थानों को दर्शाता है
ध्यान दें कि बदलाव प्रीव्यू area में प्रदर्शित है
प्रत्येक हज़ार के बाद comma separator जोड़ने के लिए thousands separator पर click करें फिर से प्रीव्यू area में बदलावों को देखें
आप font टैब पर क्लिक करके font बदल सकते हैं इसमें font typeface और size
आप font effects और अन्य tabs में जाकर अधिक सीख सकते हैं
अगले tutorial में हम alignment टैब के options के बारे में सीखेंगे
ok पर click करते हैं
800 type करके enter press करें आप देखेंगे कि संख्या 800 दो दशमलव स्थानों के साथ rupees 800 द्वारा बताई गई है
अब cells c5 से cells c7 तक का चुनाव करते हैं ctrl की को पकड़े रहिये और cells g2 को भी चुनें ध्यान दें कि सभी चयनित cells चिन्हांकित हैं
कोई भी चिन्हांकित cells पर right click करें और format cells को चुनें
पहले जैसे समान options को चुनें ok पर click करें
अब हम अन्य items के सारे खर्चे एक के नीचे एक type करते हैं phone bill के लिए rupees 600 laundry charges के लिए rupees 300 और rupees 2000 miscellaneous यानि अन्य खर्चों के लिए
accounts heading के नीचे महीने की सैलरी rupees 30000 type करते हैं
calc में दिनांक एन्टर करने के लिए cell को चुनें और date type करें
आप दिनांक के elements को forward slash या hyphen से अलग कर सकते हैं या text का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 10 october 2011
calc कई प्रकार के date formats को पहचानता है
वैकल्पिक रूप से आप cell पर right click कर सकते हैं और format cells option चुनें
category के अंतर्गत date चुनें और format में से इच्छित format चुनें मैं 12311999 चुनूँगा प्रीव्यू area में देखें
साथ ही format code mm dd और yyyy के रूप में प्रदर्शित है आवश्यकतानुसार आप format code बदल सकते हैं
मैं dd mm और yyyy type करूँगा प्रीव्यू area में बदलावों पर ध्यान दें ok पर click करें
calc में time एन्टर करने के लिए cell को चुनें और time time करें
आप time के elements को अलग कर सकते हैं जैसे कि 10 colon 43 colon 20
वैकल्पिक रूप से आप cell पर right click कर सकते हैं और format cells option चुनें
category के अंतर्गत time चुनें और format में से इच्छित format चुनें मैं 133746 चुनूँगा प्रीव्यू area में देखें
साथ ही format code hh: mm: ss के रूप में प्रदर्शित है आवश्यकता के अनुसार आप format code बदल सकते हैं मैं hh: mm type करूँगा
प्रीव्यू area में बदलावों को देखें ok पर click करें
बदलावों को अन्डू करते हैं
calc में text numbers और dates को कैसे लिखें यह सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि spreadsheet में cell के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे जाएँ
तो पहले हम देखेंगे कि एक spreadsheet में cell के बीच कैसे जाएँ
आप किसी भी cell पर पहुँच सकते हैं cursor से cell पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि विशिष्ट cell चिन्हांकित हुआ है
एक और तरीके से विशिष्ट cell तक पहुँच सकते हैं वह है cell reference यानि cell संदर्भ का उपयोग करके
name box के दाहिने ओर काले रंग के down arrow पर click करें
अब जिस cell पर आप जाना चाहते हैं उस cell का cell reference type करके enter press करें
आप name box में भी click कर सकते हैं मौजूदा cell reference को डिलीट करके आपको जो cell reference चाहिए वो type कर सकते हैं और enter press करें
अब हम सीखेंगे कि spreadsheet में एक cells से दूसरे cells के बीच कैसे जाएँ
cursor का उपयोग करके एक cells से दूसरे cells के बीच जाने का पहला तरीका है
cursor का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करने के लिए आप cell पर cursor ले जाएँ जहाँ आप चाहते हैं और left mouse button click करें
यह नए cell पर ध्यान केंद्रित करेगा
यह तरीका उपयोगी है जब दो cells काफी दूरी पर हों
एक और तरीका है tab का उपयोग करके एक row में अगले cells पर जा सकते हैं
row में पिछले cell पर जाने के लिए shift + tab प्रेस करें
column में अगले cell पर जाने के लिए enter प्रेस करें
column में पिछले cell पर जाने के लिए shift + enter प्रेस करें
अब हम सीखेंगे कि calc में keyboard की मदद से अलगअलग spreadsheets में कैसे जाएँ
सक्रिय sheet की दाईं ओर की sheet पर जाने के लिए control plus page down कीज़ साथ में press करें
सक्रिय sheet की बाईं ओर की sheet पर जाने के लिए control plus page up कीज़ साथ में press करें
cursor का उपयोग करके भी शीट्स के बीच जा सकते हैं
इस पर विस्तृत जानकारी working with sheets tutorial में मौजूद है
अगर काफी शीट्स हैं तो हो सकता है कि कुछ sheets tabs screen के नीचे horizontal scroll bar में छुपे हों
यदि ऐसा है तो sheet tabs के नीचे बायीं ओर चार buttons tabs को view में स्थानांतरित कर सकते हैं
बदलावों को अन्डू करते हैं
अब cursor से संलग्न cells को चुनने के लिए पहले एक cells में click करें
अब left mouse button press करके hold करें
screen पर cursor ले जाएँ और जब इच्छित cells चिन्हांकित you जाएँ left mouse button छोड़ दें आप देखते हैं कि चुनी हुई cells चिन्हांकित हुए हैं
अब विविध columns और रोव्स जो कि संलग्न है उन्हें चुनने के लिए group में पहले columns या rows पर click करें
अब shift की को hold करें
group में आखरी column या row पर click करें
अब विविध columns और रोव्स जो की संलग्न नहीं है उन्हें चुनने के लिए group में पहले columns या rows पर click करें
control की को hold करें और सभी अनुवर्ती columns और रोव्स पर click करें जब control की hold कर रहे hold
विविध संलग्न शीट्स को चुनने के लिए पहली इच्छित के लिए sheets टैब पर click करें
tab आखरी इच्छित sheet के लिए cursor को sheet टैब पर ले जाएँ
shift की को hold करें और sheet टैब पर click करें
यह दो शीट्स के बीच सभी tabs सफ़ेद हो जाएंगी जो दर्शाता है कि वह चुनी गई हैं
आप जो कुछ भी करेंगे वह सभी चिन्हांकित शीट्स पर प्रभाव करेंगी
tab विविध sheets जो संलग्न नहीं है उन्हें चुनने के लिए पहली sheets के लिए sheets टैब पर click करें
tab cursor को तीसरी sheet टैब पर ले जाएँ
control की hold करें और sheet टैब पर click करें
चुनी हुई tabs सफ़ेद होंगी और आप जो कुछ भी करेंगे वह सभी चिन्हांकित शीट्स पर प्रभाव करेंगी
हम लिबर ऑफिस calc के spoken tutorial के अंत में आ चुके हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः
calc में numbers text text के रूप में numbers दिनांक और समय कैसे enter करें
format cells dialog box को कैसे इस्तेमाल करें
cells के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएँ
रोव्स columns तथा शीट्स में कैसे चीजों को चुनें
व्यापक assignment
spreadsheet practice ods को open करें
serial numbers के अंतर्गत 1 से 5 तक serial number एक के नीचे एक लिखें
कीज़ के उपयोग से cells के बीच जाएँ
serial number में सभी items को चुनें
दिनांक और समय के लिए column जोड़ें
format cells dialog box options का उपयोग करके उसमें कुछ values enter करें
निम्नलिखित link पर उपलब्ध video देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैन्ड्विड्थ नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके workshops आयोजित करते हैं
जो online test pass करते हैं हम उन्हें certificates भी देते हैं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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता mission ने आई सी टी ict के माध्यम से समर्थित किया है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
यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद